पीछे एक दीवाल है जिस पर लाइट येलो और व्हाइट कलर का पेंट किया गया है काफी सुंदर इस पे पेंटिंग --

दिवाल के ऊपर जो है रेलिंग लगाई गई है और उसी के सा-ऊपर काफी सारे पेड़-पौधे है और बगल से शायद ऐसा लग रहा है रोड मे है।

यहाँ पर हमें काफी सारी बिल्डिंग्स दिख रही है बिल्डिंग्स के नीचे काफी सारी दुकाने है एक बिल्डिंग जो है ग्रीन कलर की हैं।